एक साइड में नीले कलर की पट्टी है जिस पर ये सफेद कलर से ए_टी_एम लिखा है नीचे कुछ कार खड़ी हुई है और--

पीले कलर से ब्रेड बॉक्स और नीचे कुछ लिखा हुआ है और नीचे--

लोहे के पाइप की रेलिंग बनी हुई है अंदर बहुत सा सामान दिखाई दे रहा है और--

और सिनेमा हॉल दिख रहा है जिसमें नीचे लाल कलर की बहुत सारी कुर्सी--

लाल काले कलर की है और पीछे कुछ दुकानें दिख रही है जो कुछ रंगीन और ब्लैक एंड वाइट दिखाई --

यहां एक मंदिर दिख रहा है जो नीले कलर का है जिसमें ऊपर चोटी बनी हुई है जो गोल्डन है और दो घंटे--

मिचलेस चर्च लिखा हुआ है और अंदर बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है और बाहर--

एक यहां एक काली दीवार दिख रही है जिस पर सभी--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

एक माउस की-बोर्ड और कंप्यूटर रखा हुआ है सामने दीवाल में बीच में कांच लगा हुआ है जिसकी उस साइड --

बीच में एक कथई पट्टी है जिस पर एक पीला सफेद कैलेंडर टंगा हुआ है ऊपर--

यह एक नदी दिख रही है जिसका पानी पीला--

और दिखाई दे रहा है और नीचे पथ ई अ पार बनी हुई है जिससे पानी गिर रहा है और सामने बहुत सारा जंगल--

रहा है और साइड में नीचे नदी बनी हुई है।

दिख रही है और पीछे बहुत सारी बड़ी-बड़ी नाव--

दिख रहे हैं और कुछ झंडे लगे हुए हैं ऊपर आसमान--

बड़ी हुई है और दो शटर बंद दिख रही है एक कार ग्रे एक सफेद कलर की है और साइड में खंभा है जिसमें तार है।

यह एक गेट दिख रहा है जिसके ऊपर रंगीन पांच लाइट लगी हुई है और ऊपर काले कलर की जाली लगी हुई है अंदर--

लंबी खिड़की बनी हुई है जो लकड़ी की बनी है।

यहाँ एक घर दिख रहा है जो सफेद और नीले कलर की टीने है नीचे दीवार सफेद कलर की है और सामने को --

यहां एक दीवाल दिख रही है जिस पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई है जो--

पूरी ब्लैक एंड वाइट दिख रही है और बीच में--

पीले कलर की दिख रही है और सामने दीवाल सफेद है ऊपर छत भी सफेद और ब्लैक एंड वाइट दिख रही है जिस पर एक लाइट --

टेबल है जिस पर कुछ गद्दे रखे हुए हैं।

कथई कलर की है जिसके सामने एक पेड़ लगा है और इस पर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं पीछे बड़े पेड़ दिख रहे हैं ऊपर सफेद नीला आसमान दिख रहा है।

इतना बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है और दूर एक घर दिखाई दे रहा है जो नीले कलर का--

यहां बड़ा सा हौल सड़क दिख रही है जिसमें दो बस दिख रही है एक सफेद लाल है एक ब्लॅक एंड वाइट और ग्रीन दिख रही है और --

सामने एक बस है जो पिंक और सफेद पीली दिख रही है जिसके सामने दो आदमी खड़े हुए हैं दूर एक सफेद बिल्डिंग दिख रही है ऊपर ब्लैक एंड वाइट औ --

ने काले कलर से पशु वैदिक दअअ दवाखाना श्रेणी मेंडली लिखा हुआ है और--

यहां एक झरना दिख रहा है जो ऊपर पत्थर से पानी गिर रहा है जो सफेद दिखाई दे रहा है और दोनों साइड बहुत सारे--

दीवाल है और ऊपर लाल कलर से इंफोटेंक लिखा हुआ हैऔर दिवार भी दिख रही हैं साइड में कुछ--

कुछ लड़के खड़े हुए हैं जो लाइन में खड़े हैं नीचे ग्रीन कलर की चादर बिछी हुई है इनके पीछे दुकान में अंदर--

बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सी टी_वी प्लेटें क्रेटें डरी हुई है ऊपर जात में--

तीन लकड़ी की रेलिंग बनी हुई है जो ग्रीन है और निच बहुत से पेड़े दिखाई दे रहे हैं पीछे हाथी की टंकी बनी हुई है जिसमें अंदर ग्रीन पानी--

दिख रहा है और हाथी का पैर जंजीर से बंधा हुआ है ऊपर कुछ पेड़ के पत्ते दिख रहे हैं ।

यहां दो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं जो ग्रीन कलर की है साइड में एक लाल टीनों का होल बना है और दो--

पोस्टर रखे हुए हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ है और बहुत सी स्कूटी और मोटरसाइकिल दिख रही हैं कुछ आदमी दिखाई दे रहे हैं नीचे बहुत सारी दुकानें--

मेहता फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी शादी एवं पार्टियों के ऑर्डर लिए जाते हैं लिखा है और--

पत्थर डले हुए हैं इसमें बहुत सारे खंबे बने हुए हैं और कुछ पेड़ दिख रहे हैं जो ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहे हैं ।

कोई कोई आदमी काला छाता लेकर बैठा हुआ है और सभी सर पर सफेद टोपी लगाए हुए हैं ऊपर रंगीन आसमान दिख रहा है ।